यहां पे सामने एक चाय का स्टाल लगा हुआ है।

सामने जो काउंटर है उस पे बहुत सारे चाय के कुल्हड़ बिस्किट्स मट्टी और पानी के बोतल भी रखें हुए हैं।

इसके जो दीवाल का कलर है।

वो व्हाइट कलर है।

ऊपर में एक पोस्टर लगा है जिसपे पाण्डया।

बवासीर का इलाज होता है अंदर के साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

जो दीवाल है उसका रंग पीला है।

और एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा है।

सामने एक हॉस्पिटल का रूम है बड़ा सा।

जहां पे एक बहोत बड़ा सा मैदान बना हुआ है जो की सर्कल में बना हुआ है।

गाड़ी एक व्हाइट कलर की ब्रेजा कार है।

यहां एक टेबल है नीले रंग का जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के मोटर्स रखे हुए है।

और उसके किनारे रोड हैं।

और चारों ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए है।